कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि समान--

यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बहुत सारी फोर व्हीलर खड़ी हैं और ऑटो भी खड़ी हैं।

सूरज डूबने जा रहा है बहोत सारे गड्ढे हैं।

अलग अलग तरह के कपड़े रखे हुए हैं और--

ये यह एक माल है इसमें बहोत तरह के सामान रखा हुआ है।

और दो नर्से बैठी हुई है। बहोत सारे मरिज बैठे हुए हैं। एक डस्टबिन रखा है।

और एक डस्टबिन दिख रहा है एक लड़का चाय दे रहा है।

यहाँ पर एक प्लेट में पुलाव दिख रहा है और एक जग दिख रहा है एक गिलास रखा है चटनी रखी है रायता रखा है।

यह एक कमरे में योगा कर रही हैं एक लेडिस --

नज़र आ रहा है कुछ सामान नाव पर रखा हुआ है।

एक नेट बिछा है और कुछ में नहीं बिछा है।